और एक आदमी जिसके हाथ पर प्लास्टर हुआ है।

और ऊपर को कुछ सीढ़ियां जा रही हैं।

ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ हैं और व्या--

और उसके पास एक आदमी खड़ा है।

रंग का गेट लगा हुआ है और गेट पर एक औरत अपने बच्चों को उठाकर खड़ी है।

तीन बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और बिल्डिंग के ऊपर एक पोस्टर लगाया गया--

यहां पर एक चट्टान पर एक आदमी बै--

और यहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए है।

और चार साड़ियां रखी हुई हैं और इन साड़ियों का रंग--